वहां पे एक आदमी भी काम कर रहा है।

बंबू से बनाया वाला घर है।

दिखाई दे रहा है और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बुशिस को लेवल में काट के रखा हुआ है बहुत सुंदर से।

तीन बॉउल में एक में सब्जी एक में एक में रखा हुआ है।

इसका पीछे में एक पेड़ दिखाई दे रही है।

यहां हमें दो घर दिखाई दे रहा है।

लेफ्ट साइड में घरी भी दिखाई दे रही है एन एक लड़की दिखाई दे रही है सामान ले रही है।